यह किसी गुफा का दृश्य है।

इस किले में मछली के आकार की दो आकर्ति बानी हुई हैं।

ये लगता है रायपुर में आयोजित किया गया था।

इस फोटो में केकड़े मछलियां और अलग-अलग प्रकार के छोटी-बड़ी मछलियां दिखाई पड़ रही हैं।

जिससे ज़मीन को होकर एक पगडंडी बनाई गयी है।

और टीवी वगैरा रखे हुए है और एक व्यक्ति खड़ा है।

इस इमारत पे काफी सारी लाइटे लगायी गयी हैं।